हमको यहां में एक तु ए_सी भी दिखाई दे रहा है।

हमको यहां पे एयरटेल फोर जी लिखा हुआ बोर्ड दिखाई दे रहा है।

हमको यहां में तीन ठो आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

एक आदमी दुकान के अंदर में है।

हमको दीवार में एक पोस्टर भी दिखाई दे रहा है।

दो ठो यूस टिश्यू पेपर भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा मास्क भी टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

हम को ये फोटो में एक चर्च दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारे स्टेच्यू भी बना हुआ है।

हमको यहां में एक रेड कलर का सीढ़ी भी दिखाई दे रहा है घर का रूफ का कलर ग्रीन है।

एक चर्च का छत का कलर ग्रीन है।

अंदर में हमको बहुत बड़ा पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

ये वॉल सफेद कलर का है ये वॉल में बहोत सारा पेंट टंगा कर है।

हमको ये फोटो में एक ठो ऑफिस दिखाई दे रहा है।

ऑफिस का केबिन का कलर ब्लू है।

पीछे में एक येलो कलर का घर भी है।

हम को इधर फ्रिज भी दिखाई दे रहा है।

हमको यहां में बहुत सारा लायन के स्टैचू भी दिखाई दे रहा है।

ये रूम का कलर पूरा सफेद है।

विंडो में ग्रीन कलर का पर्दा लगाया हुआ है।

टेबल ब्लैक कलर का है और चेयर लोहा का है।

हमको एक ब्लू कलर का बेंच दिखाई दे रहा है।

हमको यहां में पांच तो छोटा छोटा घर दिखाई दे रहा है।

घर के पीछे में हमको पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

दो औरत साड़ी पहन के बैठा हुआ है।